यहाँ बहुत सारे कपड़े भी बिछाए हुए है ब्लू कलर की साड़ी ब्लैक कलर की साड़ी वाइट कलर की साड़ी ऑरेंज --

इमेज पे भी कुछ पहना है और ग्रे कलर का टी शर्ट और--

येलो कलर के पिंक कलर के और डिफरेंट कलर के टो कपड़े--

नीचेमें लिखा है द वेजी डिलाइट ।

और सामने में व्हाइट बोर्ड में टीचर पढ़ा रहा है।

औ बहोत सारे ब्लैक ब्लैक कलर के दरवाजे--

क्या क्या बजा रहे है और गा रहे हैं अलग अलग कलर का कपड़ा पेहने हैं।

और ब्लैक कलर का टीशर्ट और ब्लैक कलर का शूज पहने हुए हैं।

और ये बहुत बड़ा सा जमीन है।

और यहां पेपर में कलिंगा यूनिवर्सिटी का ऑफिस है कॉफी कैफे डे है।

यहां पे मैं एक इमेज को देख रही हूं ऊपर में क्रॉस बना--

एक बिल्डिंग है जिस में लिखा है फूड ट्रैक ।

मैं एक इमेज को देख रही हूं जो कि एक वॉटर फॉल का है वाटर फॉल जहाँ से गिर रहा वो पूरा पत्थर पत्थर स्ट्रांग पत्थर से बना है पत्थर और मिट्टी से।

और खुला आसमान भी है यहां पे--

ब्लू कलर का स्मोकिंग इफेक्ट है क्लाउडस व्हाइट कलर के--

और वो क्रीम कलर की है वो बिल्डिंग उसमें खिड़की पे रेड रेड कलर का बना है।

खुला आसमान ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है।

इसमें बहोत सारे टमाटर हैं येलो कलर के टमाटर--

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें लाल कलर का ग्रिल गेट है और अंदर में कुएं हैं।